blocks in admin s dashboard पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे कि: blocks कैसे जोडें और डिलीट करें और front page कैसे set करें
इस tutorial का record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ:
xampp 5630 से प्राप्त apache mariadb और php
moodle 33 और firefox web browser
आप अपनी पसंद के किसी भी web browser का उपयोग कर सकते हैं
इस tutorial के शिक्षार्थियों को admins dashboard की बुनियादी जानकारी होनी चाहिए
browser पर जाएं और अपनी moodle site खोलें सुनिश्चित करें कि xampp service चल रहा है
अपने admin username और password के साथ login करें
अब हम admins dashboard पर हैं
याद रखें: blocks विशिष्ट उद्देश्य या जानकारी प्रदान करते हैं
अब समझते हैं कि हम moodle blocks के साथ कैसे कार्य कर सकते हैं
उपयोगित theme के आधार पर blocks दायीं ओर या दोनों ओर हो सकते हैं
blocks में ऐसी जानकारी होती है जो हम चाहते हैं कि log जब भी log इन करें उसे देखें
यहाँ moodle में कई प्रकार के blocks उपलब्ध हैं और उन्हें हमारी प्रिफेंसेस के अनुसार आसानी से स्थानांतरित या व्यवस्थित किया जा सकता है
add हम अपने dashboard में कुछ blocks जोडेंगे
पेज के बायीं ओर पर navigation menu पर click करें
dashboard के दायीं ओर पर customise this page button पर click करें
ध्यान दें नया menu आइटम्स add a block दिखाई देता है add a block पर click करें
एक नया popअप window खुलता है हमें block के प्रकार को चुनने की आवश्यकता है जिसे हम जोड़ना चाहते हैं
उदाहरणस्वरूप messages पर click करें आप देख सकते हैं कि messages block अब dashboard पर प्रदर्शित होता है
अभी वहाँ पर कोई भी messages नहीं है
default रूप से सभी नये blocks सबसे दाएं column पर जुड जाते हैं
एक और block जोडते हैं बायीं ओर पर add a block menu पर click करें
menu types की सूची से html चुनें html block वह block है जहाँ कस्टम html लिख सकते हैं
इसका उपयोग करके हम widgets embed कर सकते हैं जैसे कि library widgets news feeds twitter facebook आदि
अब ध्यान दें कि new html block नीचे messages block में जुड़ गया है
html block में gear icon पर click करें फिर configure new html block block पर click करें
configure html block में 3 sections हैं:
default रूप से पहला section विस्तारित है
सभी sections को विस्तारित करने के लिए expand all पर click करें
block टाइटल में things to do type करें
add content area में इस admin user के लिए कुछ कार्य जोड़ते हैं
निम्न type करें: create a new course create new users add users to the course
editor एक html editor है और किसी भी any word processor या editor की तरह उपयोग किया जा सकता है
where this block appears में options देखने के लिए नीचे scroll करें
default region में content चुनें default weight में10 चुनें
block का कम वजन उच्चतर यह रिजन में प्रदर्शित होगा10 सबसे कम है
10 चुनकर मैं सुनिश्चित कर रही हूँ कि यह content रिजन के सबसे ऊपर है
यह block admins dashboard पर प्रदर्शित होगा
अब on this page section पर आते हैं
हमारे मामले में यह dashboard है यह कॉन्फ़िगरेशन उपरोक्त सेक्शन में परिभाषित डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन को ओवरराइड करेगा
वह where this block appears section है इस section में region में content और weight में10 चुनें
कृपया ध्यान दें कि block के प्रकार के आधार पर कॉन्फ़िगरेशन settings अलगअलग होंगी
बदलावों को बदलने के लिए save changes पर click करें और dashboard पर वापस जाएं
देखें कि things to do टाइटल के साथ html block अब दिखता है
हम move icon का उपयोग करके इस ड्रैग करके block की position बदल सकते हैं
इस ड्रैग और ड्राप करके things to do block को course overview block के नीचे स्थानांतरित करते है
हम देखते हैं कि यह कैसे configuration को बदलता है जिसे हम कुछ minutes पहले set करते हैं
gear icon पर और configure things to do block पर click करें फिर expand all पर click करें
on this page section देखने के लिए नीचे scroll करें weight2 में बदल जाता है default weight फिर भी समान रहता है
dashboard पर वापस जाने के लिए cancel पर click करें
हमें इस learning plans block की आवश्यकता नहीं है अतः इसे डिलीट करें
popअप window दिखाई देती है और इस डिलीट के बारे में सुनिश्चित करने के लिए हमें संकेत देती है yes बटन पर क्लिक करें
ध्यान दें कि learning plans block अब उपलब्ध नहीं है
अब अपने moodle संस्थापन के front page को customize करें
बाएं menu में site administration link पर click करें
front page section में front page settings पर जाने के लिए नीचे scroll करें इस पर click करें
full site name को digital india learning management system में बदलें
यह वह text है जो breadcrumbs के ऊपर प्रत्येक पेज के शीर्ष पर दिखाई देता है
short name वह text है जो पेज के टाइटल पर दिखाई देता है
ध्यान दें कि पेज का टाइटल digital india lms है जिसके बाद हम जिस पेज में हैं उसका name है
short name का उपयोग logo text के रूप में भी किया जाता है यदि हम कोई logo image प्रदान नहीं करते हैं हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे
front page items के लिए ड्रॉपडाउन देखने के लिए नीचे scroll करें ये उन items की सूची है जिन्हें front पेज पर दिखाया जा सकता है
सभी visitors चाहे वे लॉगइन हों या न हों इन items को देख सकते हैं
क्रम एक combination box द्वारा निर्धारित किया जाता है हम इसे वैसे ही छोड़ देंगे
अतः सभी यूजर्स courses की सूची यदि उपलब्ध हो देखने में सक्षम होंगे और कुछ नहीं देख पायेंगे
अगला front page items when logged in है यह उन items की सूची है जिन्हें logged इन वाले यूजर्स को दिखाया जा सकता है
पहले drop down में enrolled courses चुनें
हम बाकी options को उनके default values के साथ छोड़ देंगे
नीचे scroll करें और save changes पर click करें
सक्षेप में
इस tutorial में हमने सीखा html block things to do नामक एक html block जोड़ना और निर्दिष्ट करना कि यह पेज पर कहां प्रदर्शित होना चाहिए
हमने यूजर्स में guests और लॉगइन के लिए frontpage सेटअप भी किया है
यहाँ आपके लिए एक नियतकार्य है: private files block डिलीट करें code files लिंक में दिए गए निर्देशों का उपयोग करके नया html block जोडें
निम्नलिखित link पर मौजूद video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें
spoken tutorial team कार्यशालाएँ आयोजित करती है और प्रमाणपत्र देती है अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
कृपया इस forum में समय के साथ अपने प्रश्नों को post करें
spoken tutorial project nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है इस mission पर अधिक जानकारी दिखाई गई link पर उपलब्ध है
यह script विकास द्वारा अनुवादित है मैं जया अब आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुडने के लिए धन्यवाद